यह एक आजातशत्रु होटल है।

कारख़ाना है। लोग यहाँ काम करने आते हैं और यहाँ पे एक बाइक --

बर्तन कपड़े घरेलु ग्रॉसरी --

इसमें रोड जो है कच्चा है अभी।

और ये छै चक्के की गाड़ी है।